जिनका सामने का टप्पर खुला हुआ हैं लोग हैं--

एक रिक्शा चल रही है आस-पास पड़े पौधे है ।

ब्रेड रखे हुए हैं पैकेट हैं बर्निया रखी हुई हैं।

किनारे पर रास्ता बना हुआ है लाइट के खम्भे लगे हुए हैं पेड़-पौधे हैं।